ये जो आप छायाकृत देख रहे हैं वो किसी नदी का छायाकृत है और यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है और इस छायाकृत में बहुत सारे --

और मसाज बनाने के बाद फोटो क्लिक करते है और इनसे बहुत सारे लोग इम्प्रेस होते है ये जो शरीर भी दोस्त रहता है हर शरीर का मूवमेंट --